और एक आटी जा रही है।

यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है और सबने अपना अपना टैंट बनाया है।

इलको सब पे अवार्ड ही अवार्ड मिल रहा है अवार्ड ही अवार्ड मिल रहा बस अवार्ड --

वाइट कलर का बालकनी --

पार्क है पार्क में बहुत सार ये है और यहाँ पे जो है बहुत सारे पेड़ पोधे हैं देखने में बहुत सुंदर है बहुत अच्छा है पार्क --

यह शिवम और लितेश को बहुत पसंद है बहुत अच्छा है और लितेश ने इसपे बहुत बार झुला भी झुला है और इसको ये बहुत ज्यादा पसंद भी है ।